कुछ अ अ अ शोभ यात्रा निकली हुई हैं।

है दुकान देखिए बड़े-बड़े आगे का भाग दिखाई दे रहा है। पीछे देखिए --

और देखिए यहां पे जो एक साइड जो गेट है वो बंद है और एक साइड गेट खुला हुआ है और--